यह भाषा मेरी नहीं है मुझे समझ नहीं आ रही है।

हर एक चीज का किताब मिल जाएगा आपको पीछे पे कुर्सी लगा हुआ हैं दुकानदार बेठा हुआ हैं अपना कुर्सी पे कोन्टर पकडे हुए हैं।

ए एक आदमी माइक से बहुत बोल रहे है भासन मतलब दे रहे हैं | ये डॉक्टर भीमराओ अम्बेडकर इधर है एक साइड भीमराओ अम्बेडकर है।

एतत भवो भगवान बुध है | नम्हो बुध जय भीम जय भारत जे ये लोग अपने बात को रख रहे है | अगल बगल आदमी बैठे हुए है।

ये एक केंद्र इनका ए.टी.एम है यूनियन का | चचा मोबाइल चला रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं और आ रहे हे। एक लड़का खड़ा हुआ है। साइड देख रहा है। राइट साइड मे अपना देख रहे है वो--

ये बुद्ध भगवान का मूर्ति है बगल वगल गार्डन है अच्छा लग रहा है।